और वाइट यह एक कांच के स्पून में रखी हुई हैं ।

के उस साइड गेट के उस साइड एक ब्‍लोरो कार खड़ी हुई है जिसके नीचे एक जेन्ट्स खड़े हुए हैं।